पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ टाइप भी दिख रहा है जे--

यहाँ पर देखिये कितनी खाली जगह है और एक आंटी बहार निकली हुई--